हेइ स्थान बनी हुई हैं हे हिरण बनी हुई --

भी दिखाई दे रही है। एक साइड रोड दिखाई दे रहा है। एक साइड कंकर पत्थर कुछ सुखी लकडियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे यहाँ हा बहोत बड़ा यहाँ ग्राउंड है । जिसमे --

ऐ सुखदेव महा विध्यालय है ऐ कॉलेज की वि --

खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहां अन गिनत कारे --

कर्मचारी दिखाई दे रहे है यहां।

साइड मे कछु रखे हुए दिखाई दे रहे है । यह चाय है । कप आधे कप से ज्यादा दिखाई दे रही है ।

खड़े हुए दो चार दो चार लोग इकट्ठे खड़े दिखाई दे रहे हैं पुरे में।

ये पिल्लरो को चेक करते हुए दिखाई दे रहा आदमी कुछ।